लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी ये स्क यह एक यहाँ पे लड़का और लड़की कुछ पोगराम कर रहे हैं।

यह एक नट अ कलाकृति है जहां पे संस्कृत कलाकृति है। यहां पे लड़कियां डांस करते हुए नजर आ रही है।